लाइट का लगा हुआ है सामने एक वाश मशीन लगा हुआ है सामने एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है।